इस फोटो में विवो का शोरूम नजर आ रहा है इस फोटो में--

इस फोटो में पानी नजर आ--

इस फोटो में गार्डन नजर आ रहा है।

रोड नजर आ रही है इस फोटो में घर नजर आ--

लोग चिपके हुए दीख रहे हैं।

इस फोटो में हरियाली नजर आ रही है इस फोटो में--

इस फोटो में पानी नजर आ रहा है।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

बहोत से चीजे नज़र आ रही है इस फोटो मे लाइट नज़र--

इस फोटो में फर्श नजर आ र--